घर देखने में बोहत अच्छा लग रहा है। ये येल्लो कलर से पेंट हुआ है।

जिला केंद्र जिला गोपाल गंज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद--

ये एक सड़क पी.सी.जी. है।

येलो जैकेट पहने है और ब्लैक पैंट पहने है और जूता पहने है।

समुन्द्र बोहुत बड़ा है दिखने में बोहत अच्छा है और इसमें भारी मात्रा में लोग बैठे हुए हैं।

और उस मंदिर से का रंग रेड से है पेंट हुआ है।